यहाँ पर क्रेन की मदत से मिट्टी खोदी जा रही है और कुछ लोहे की पिलर पड़े हुए है और साइड मे एक नीले रंग का जनरेटर लगा हुआ है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने लाल रंग क टीशर्ट और सफ़ेद रंग की पैंट पहनी है वो इन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है।

यहा पर एक वॉटर पार्क है एक पूल है जिसमे पानी भरा हुआ है और कुछ लोग दिख रहे है जो स्विमिंग कर रहे है कुछ पूल में जा रहे है और पूल के साइड मे एक बड़ा सा स्लाइडर है।